यह एक गैरेज का सीन लग रहा है जिसके ऊपर मे टीना है और एक कार वाशिंग हो रही है और नीचे मे एक पाइप भी है और कार वासर इसको वास कर रहा है और कार का कलर लाल है और ये होनडाई का है।

झाड़ी के आगे मे बहोत सारे झाड़ी-ताड़ी है अ उस ओर हमे जंगल झाड़ दिखाई दे रहे है और पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे एक मंदिर भी है।